आलमारी के बीचो बीच एक तक्था लगा हुआ नज़र आ रहा है पीछे की तरफ एक गेट लगा हुआ है जिसपर कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं दीवाल पर टी.वी. लगी हुई दिख रही है।

जिसके सामने की तरफ एक केटल रक्खा हुआ है और दो पानी के बॉटल रक्खे हुए है बेड भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर ढलता सूरज दिखाई दे रहा है जिसकी किरणे इस सामने बने गार्डन पर पड़ती हुई नजर आ रही है गार्डन के बगल में पेपर लगा हुआ दिखाई दे रहे है।

और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की देखने में काफी पुरानी लग रही है और शायद किसी राजा-महाराज से सम्बंधित बिल्डिंग लग रही है।

बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की काफी अच्छी तरह से बनाई गई है इस बिल्डिंग की डिज़ाइन काफी सुन्दर लग रही है इस बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स भी बने हुए नज़र आ रहे हैं और बगल में ऑफिस खुला हुआ दिखाई दे रहा है जोकि --

रोड दिखाई दे रही है जिसके दोनों तरफ सफ़ेद पट्टी बनाई गयी है रोड के किनारे पर एक बाइक खड़ी नजर आ रही है जिसके दोनों तरफ मिट्टी की ढलान बनी हुई है जिस --

इसी जगह पर एक टेबल के ऊपर दो ब्यूटी प्रोडक्ट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं किसी ब्यूटी ब्यूटिशियन द्वारा लौंच किये गए प्रोडक्ट हैं एक ब्यूटी ट्यूब भी रखी हुई दिखाई दे रही है

किसी जगह पर फ़ूलों की कुछ मालाएं टँगी हुई नज़र आ रही है। देखने मैं ये किसी फ़ूलों की दुकान लग रही है। यहाँ सफ़ेद और लाल फ़ूलों से बनाई हुई कुछ मालाएं हैं और कुछ गेंदे के फ़ूलों से मालाएं बनी हुईं टँगाई हुई गई हैं।